एक मुंह है जो व्हाइट कलर का बना हुआ है इसमें बहोत--

और एक छोटा सा लाल कल रंग का घर है जोकि चिड़िया का घर है एक कुर्सी है।

फोटो में यह एक दुकान है दुकान का नाम--

कुछ टी शर्ट और लोअर तो सोल्जर के जैसा है और इसमें एक विंडो भी है और ब्राउन कलर का फ्लोर --

और एक बच्चों के वॉक करने वाली वॉकर है।

यह एक बस स्टैंड के बाहर की फोटो है एक ऑटो --

और एक ट्रेन जा रही है यहां पर बहोत सारे पेड़--

ब्ल्यू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और ब्राउन कलर की मिट्टी है और एक सड़क है आने जाने --

यह एक म्यूजिक सिस्टम है जो की--

मोबाइल शॉप है जोकी भटिंडा में--

शादी के सोफे की पीछे ब्राउन --

रेड और भी बहोत सारे कलर की डेकोरेशन की है स्टेज के नीचे ब्राउन और ग्रीन कलर के पौधे लगे--

वीकल्स की शॉप है यहां पर बहुत सारे स्कूटी खड़ी है यहां पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सा--

कलर का घर और ब्लू कलर की खिड़की है यहां पर बहोत सारी लेडिस है।

बहोत सारे पोधै ओर मिट्टी हैं यहाँ पर--